bash में arithmetic comparison के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
* equal to equal to not equal to not equal to
less than लैस दैन less than equal to लैस दैन equal to
greater than greater दैन और greater than equal to greater दैन equal to commands
हम यह कुछ उदाहरणों की मदद से करेंगे
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 operating system
* gnu bash version 4110
अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
मेरे पास पहले से ही arithmetic operators का एक कार्यकारी उदाहरण है
मैं इसे खोलती हूँ
मैंने file को example1 sh named दिया है
अपनी पसंद के किसी भी editor पर file खोलें और दिखाए गए की तरह code type करें
ऐसा कैसे करते हैं अब तक आप इससे परिचित होने चाहिए
इस program में हम जाँचेंगे कि दी हुई फाइल खाली है या नहीं
अब मैं code समझाती हूँ
यह शीबैंग line है
सबसे पहले console पर enter filename printed किया जायेगा
read command मानक input से data की एक line पढ़ता है
यह command backticks backticks में बंद होती है
backtick बहुत विशेष मतलब रखता है
जो भी आप backtick के बीच में type करते हैं मूल्यांकित किया जाता है
cat command फाइल की विषय वस्तु दिखाएगी
wc प्रत्येक फाइल के लिए नयी लाइन शब्द और byte counts print करेगा
hyphen w शब्द count count print करेगा
जो होगा वो इस प्रकार है
* पहले cat command फाइल को पढ़ेगी
यह वो input लाइन है
* जिसे फिर क्रम में रखा जाता है या wc command को भेजा जाता है
* अतः यह statement दी गयी file में शब्दों को counts यानी गिनता है
* output variable x में संचित किया जाता है
यह if statement है
hyphen eq command जाँचता है कि क्या शब्द की गिनती zero के बराबर है
अगर condition true है तो हम message print करेंगे file has zero words
fi पहली if condition का अंत है
यहाँ अन्य if condition है
यहाँ hyphen ne command जाँचती है कि क्या शब्द की गिनती zero के बराबर नहीं है
अगर condition true है तो हम print करते हैं फाइल इस प्रकार शब्द रखती है
$dollar x word count देगा
यह दूसरी if condition का अंत है
अपनी program file को सेव करें
अब अपना program निष्पादित करते हैं
terminal खोलें
पहले list txt file बनाते हैं
type करें: touch list txt
add file में एक line जोड़ते हैं
type करें: echo डबल कोट्स में how are you डबल कोट्स के बाद ग्रेटर दैन साइन list txt
अब अपनी script को निष्पादन के योग्य बनाते हैं
type करें:
अब type करें dot slash example1 sh
enter filename प्रदर्शित हुआ है
type करें:
output प्रदर्शित हुआ है: list डॉट txt has 3 words
अब दूसरे operators के set के बारे में सीखते हैं
अब मैं एक अन्य file खोलती हूँ
यह example2 sh है
कृपया अपने editor में एक file खोलें और इसको example2 sh name दें
अब यहाँ अपनी example2 sh file में प्रदर्शित की तरह code type करें
अब मैं code समझाती हूँ
यह program जांचेगा कि क्या शब्द की गिनती यानी word count
* एक से बड़ा है या छोटा है
* एक और सौ के बीच में है या सौ से अधिक है
यहाँ हमारे पास हमारी शीबैंग line है
read statement यूज़र से filename की तरह input लेता है
यहाँ hyphen c command byte counts को print करने में प्रयोग होती है
if statement में hyphen lt command जाँचता है कि क्या word count एक से छोटा है
अगर condition true है तो हम print करते हैं no characters present in the file
fi if कंडीशऩ को ख़त्म करता है
अगला if statement nested if statement रखता है
पहले hyphen gt command जाँचता है कि क्या word count एक से बड़ा है
यदि हाँ तो यह echo statement निष्पादित किया जायेगा
यहाँ इस if statement में कई conditions हैं
यहाँ इस if में हाइफन ge कमांड जाँचती है कि क्या वर्ड काउंट एक से बड़ा या बराबर है
* और hyphen le command जाँचती है कि le word count सौ से कम या बराबर है
अगर दोनों conditions संतुष्ट होती हैं तो यह prints करता है:
number of characters ranges between 1 and 100
कृपया ध्यान दें कि पूरी if कंडीशऩ को संतुष्ट करने के लिए दोनों conditions true होनी चाहिए
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने दोनों conditions के बीच में एम्परसैंड ampersand को रखा है
fi इस if statement का अंत है
फिर अगला if statement मूल्यांकित किया जायेगा
hyphen gt command जाँचती है कि क्या word count सौ से बड़ा है
अगर condition संतुष्ट होती है तो हम print करते हैं number of characters is above hundred
fi if statement का अंत है
यहाँ हम दूसरे if statement को समाप्त करते हैं
अब अपने terminal पर वापस आते हैं
अब program निष्पादित करते हैं
chmod plus x example2 dot sh
dot slash example2 dot sh
type करें list txt
output प्रदर्शित होता है list txt has more than one character
number of characters ranges between one and hundred
add list txt file में characters जोड़ते या हटाते हैं
फिर देखें कि कौन सा if statement निष्पादित होता है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
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
एक नियत कार्य में not equal to operator का प्रयोग करने वाले प्रदर्शन के लिए एक program लिखें
नोट hyphen ne
नीचे दिए link पर उपलब्ध video देखें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
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद